पुस्तक पेंट गोंद यही सब रखी हुई है।

और अंदर की तरफ चारों तरफ बुक्स ही बुक्स रखी गई हैं।

और मिनी लाइट्स भी है कुछ ऊपर दो व्यक्ति खड़े हैं अंदर की तरफ बहोत सारे लाइट्स और बहोत सारी--

और पेट्रोल पंप यहां पे एक दो ही है बहोत बरा नहीं--

पौधा भी लगाया गया है पीछे भी हमें कुछ पेड़ पौधे हरियाली बाउंड्री भी दिखाई दे रही है और एक गाड़ी भी हमें नजर आ रही है।

यह एक बहोत ही सुंदर सा नजारा है।

यह एक बहोत ही सुंदर सा हमें कोई घर ही है जो की--

हो रहा है चारों तरफ यहां पे कुछ मशीन्स तो कुछ लोहे की छड़ें--

इन जर्नलिस्ट के लिए नाश्ते के लिए भी कुछ फ्रूट्स रखे हुए टेबल पड़ हैं।